गुलाबी कलर का रेलवे चिकित्सालय दिख रहा है।

मूर्ति बना दिख रहा है और बिल्डिंग --

साईं बाबा की जय हो विंध्याचल माता की जय हो।

सामने से एक व्हाइट कलर की बस --

और एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है लघु शंका कर रहा है।

दे रहीं हैं और मेरे सामने डाबर चवनप्रास रखा हुवा दिख रहा हैं।

और काफी सारे लोग यहां वहां चलते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लगता है।

एक लड़की दिख रही है जो कि--

और उस लड़की की खुशी का कोई ठिका--

मुझे इस तसवीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि खरगोश--

हुए है अपने हाथ में और मुझे लगता है कि वो उसे डॉक्टर के यहां लेके आया है।

कंप्यूटर क्लास नजर आ रही है।

जैसे सेवन थ्री ऐट नाइन सेवन शिक्स --

तस्वीर में अचेस मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे काफी सारी सब्जियां और फ्रूट के नाम में एक वो होता है तरबूज--

नीचे जी_जी लिखा है नर्सिंग होम भी लिख रहा है।

सीधे उन्नीस सौ पचास रुपए क्रेडिट होगा और डी_डी_डब्ल्यू --

और शायद यहां सादी का प्रोग्राम होने वाला है।